जो चटनों पे और कुछ पेड़ पौधे हैं। ग्रेन कलर के है। ओ दिख रहा है। बर्ड भी धिक रहा हैं। ब्लू कलर भी हैं। रेड भी है ।